यहां पर बच्चे कुछ कला का काम कर रहे हैं।

पीछे एक खिड़की लगी हुई है जिसका रंग काला है।

इस फोटो में ढेर सारी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं जो कि हिंदू भगवान की हैं इसमें एक शेर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं।

फ़ोटो मे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है यहां पर हरे भरे पेड़ पौधे --

जमीन पर थोड़ा सा पानी भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर तीन चार लोग खड़े दिखाई दे रहे है।

ए_टी_एम में पीछे की दीवाल का रंग नीला है।

ए_टी_एम के अंदर एक ए_सी भी लगी दिखाई दे रही है।

यहां का शटर भूरे रंग का दिखाई दे रहा है छत पर थोड़ी से लाइटें भी लगी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मे एक मछली की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर ढेर सारी रंग बिरंगी अलग-अलग प्रकार की मछलियां रखी हैं।

यहां पे छोटे छोटे हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में ढेर सारे लोग दिखाई दे रहें हैं जो की सरियों पे खड़े हैं ये लोग छत बनाने का काम कर रहे हैं।

पीछे की दीवाल सफेद रंग की दिखाई दे रही है।

यहां पर ढेर सारी सीमेंट भी पड़ी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में कृष्ण और राधा जी की मूर्ति दिखाई दे रही है।

उन्होंने ढेर सारी मालाएं पेहनी हुईं हैं पीछे रंग बिरंगी लाइटे भी लगी हुई हैं।

इस फोटो मे एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें बहोत ढेर सारे काले रंग के पत्थर दिखाई दे रहे है।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

आसमान में कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं आसमान का रंग नीला एवं सफेद है।

इसके अगल बगल बहोत सारे हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहें हैं।

जो कि पत्थर भूरे रंग का है यहाँ पर बाहर भी ढेर सारे पत्थर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है यहां पर एक छोटी सी घास भी दिखाई दे रही है।

मैदान की घास का रंग हरा दिखाई दे रहा है।

पिछे ढेर सारे छोटे छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे ही पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक नदी दिखाई दे रही है जिसका रंग काला समझ में आ रहा है।

पीछे छोटे छोटे घर और ढेर सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

आसमान का रंग सफेद एवं नीला दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर ढेर सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक पहाड़ के बीच में सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं जो कि काले रंग की दिखाई दे रही हैं।

घर पर सूरज की रोशनी भी चमक रही है।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

घर में एक गेट दिखाई दे रहा है जो कि बैंगनी रंग में --

पोता गया है यहां का जमीन का रंग भूरा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक बाल काटने की दुकान दिखाई दे रही है।

जिसमें एक शीशे का दरवाजा लगा हुआ है।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

यहां पर एक हरी कलर की चादर भी बिछी हुई है।

इस फोटो में एक कमरा दिखाई दे रहा है।

जहां पर एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है।

अगल बगल ढेर सारी कुर्सियां रखी हुई हैं जिनका रंग काला है।

बगल में एक आलमारी भी रखी दिखाई दे रही है कमरे में दीवार सफेद रंग की है।

इस फोटो में दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक खाली मैदान दिखाई दे रहा है जहां पर दो खंभे गड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मे चार पांच आदमी दिखाई दे रहे हैं जो के एक ठेले पे रखी बोरियों को एक कमरे मे लेके जा रहे है।

उस कमरे में ढेर सारी सफेद रंग की बोरियां रखी हुई हैं।

यहां पर दो साइकल भी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में ढेर सारे कप दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग अलग रंग के हैं।

यह एक लोहे के रॉड पर टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये लोहे के रॉड के पीछे का जो दीवाल का रंग है वो सफेद दिखाई दे रहा है।

नीचे कुछ मग रखे हुए भी दिखाई दे रहे --

इस फोटो में ढेर सारी कूलर की पंखिया दिखाई दे रही हैं जोकि नीले कलर की हैं।

जमीन का रंग भूरा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में तीन चार लोग दिखाई दे रहे हैं जोकि एक नदी पर --

चल रहे हैं यहां पर एक नाव भी दिखाई दे रही है।

आसमान का रंग नीला एवं सफेद दिखाई दे रहा है।

इस छत पे ई सफेद रंग की पुताई हुई है वहां पर पंखे लगे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर ढेर सारे गुब्बारे भी चिपकाए गए हैं जिनका रंग लाल एवं पीला है।

इस फोटो में बहोत ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर जमीन पर हरी कलर की चादर बिछी हुई हैं यहां पर ढोल नगाड़े भी रखे दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

यहां पर तीन छोटी छोटी कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं जो के लाल रंग में हैं।

यहां पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है जो हरा भरा है।

आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे तीन चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं एवम पीछे दो लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो के कमरे के अंदर हैं।

बच्चों ने भारत के जवानों की जर्सी पहनी हुई है एक लड़की ने तितली का वस्त्र पहना है।

सामने एक टेबल रखी हुई है जिस पर ढेर सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयां रखी हुई हैं।

पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका रंग थोड़ा सा बैंगनी समझ में आ रहा है।

आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है आसमान में एक दो सफेद कलर के बादल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर पानी भी दिखाई दे रहा है यहां पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में ढेर सारी लड़कियां दिखाई दे रही हैं जिन्होंने रंग बिरंगी साड़ी पहनी हुई है।

पीछे दीवाल का रंग भूरा दिखाई दे रहा है।

यहां पर तीन छाते भी दिखाई दे रहे हैं जो की पीले नीले एवं लाल कलर में रंगे हैं।

यहां पर एक टेंट भी दिखाई दे रहा है जो कि हरे कलर का है।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

चे खेल रहे हैं यहां पर ढेर सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

जमीन पे कहीं घास है कहीं घास नहीं है ये भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे एक दुकान दिखाई दे रही है जहां पर ढेर सारा समान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह सब एक भूरे कलर के रैक मे सीधे तरीके से रखे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर ढेर सारी स्टील की कुर्सियां रखी दिखाई दे रही हैं एक काले रंग की भी कुर्सी लगी हुई है।

यहां पर रंग बिरंगे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर काफी ज्यादा कोहरा भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर एक दुकान भी दिखाई दे रही है।

यहां पर दो लोग भी दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक डस्टबिन रखा दिखाई दे रहा है जोकि नीले रंग का है।

इस फोटो में एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है जहां पर ढेर सारे तेल के कनस्तर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर लाल कलर की कुर्सियां रखी दिखाई दे रही हैं।

पीछे कुछ हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां पे औरतों के लिए स्वेटर रखे हुए हैं जिनका रंग गुलाबी पीला नीला काला नारंगी लाल इत्यादि है।

यहां पर रैक में भी कुछ कपड़े रखे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि छत बनाने का काम कर रहे हैं।

यहां पर छरि सरीये भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर ढेर सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जोके हरे भरे हैं।